और यहां पे पीछे पेड़ भी लगे हैं।

यहाँ पे एक बड़ा सा हाथी बना हुआ है जिसको बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है।

पे बोहोत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं।

दूर दूर तक बहोत सारे घास पेड़ लगे हुए है।

छत पे पीछे फूल से दो दिल बना हुआ है।

यहां पे एक पिज्जा हट है और एक पाव भाजी की दुकान है।

एक पेड़ भी लगे हैं और यहां पे गमले भी हैं और--

उधर घर है और यहां पे घास भी लगी है।

ये एक घंटी भी लटक रही है।

यहां एक मॉल है और इस मॉल में इंसान घूमने आता है।

यहां पे बांस भी लगी हुई है और एक आदमी ईंटें उठा रहा है।

और यहां पे दो तीन आदमी भी हैं एक लड़का भी है।

यह एक बहोत बड़ा सा यूनिवर्सिटी या कॉलेज है।

यहां एक एडोर्न सेंटर है और यहां के बाहर खेलने की जगह बनी है।

इसका नाम कनक ऑटो मोबाइल्स है।

यहां पे तीन मूर्तियां रखी हुई है।

यहां पे तरह तरह के खिलौने तरह तरह के समान और बहुत सारी चीजें मिलती हैं।

आश्रम है और यहां पे मॉल भी बना हुआ है।

जैसे कि शैंपू फेस वॉश पाउडर रोज वॉटर साबुन लाइवबाय मेहंदी और भी बहुत सारे सामान मिलते हैं।